और यहा पर जो सामान रखा गया है कुछ पॅकेट्स मे कुछ बड़ी पॅकेट्स है कुछ छोटी पॅकेट्स है ये पॅकेट्स खुली हुई है जिसमे से कुछ आटे की है कुछ चावल की है।

जो मंजन है उनमे रैपर से कागज को चिपकाया गया है पीछे की ओर मे एक लोहे का दीवाल बनी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं पैकेट्स हैं और आंटे की पैकेट हैं कुछ चावल की पैकेट रखी हुई हैं।

बस के ऊपर के साइड में सामान रखने का भी बनाया गया है और कुछ परदे भी हैं जो नीले नीले हैं कुछ खिड़की भी दिखाई दे रही हैं सामने की और में एक गेस्ट --

एक बोर्ड लगा हुआ जिस पे लिखा हुआ है बी विवो सामने की और मे सीडी दी गयी है। आने जाने के लिए जो सिमेंट की बनी है।

बाजु में कुछ बना हुआ हैं सामने की ओर में एक गमलपाटा लगा हुआ हैं जो कांटेदार हैं और सामने की ओर में दीवार बनी हैं जिसमे हरा कलर किया गया हैं।

यहाँ पर एक हाॅल दिखाई दे रहा है हाॅल मे जो हे काफी प्रकार की मूर्तिया रखी गयी है देखने पर लग रहा हे की यहा प्रियदर्शनी लगती है हाॅल मे जो मूर्तिया रखी गई है कुछ कांच मे है।